कारखाना है यहाँ पर कारें सुधारी जातीं हैं।

यहाँ पर बहुत सारी लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं।

यहाँ स्टेज लगा हुआ है जिस पर गणेश जी महराज की प्रतिमा रखी हुई है एवं इसको बहुत अच्छे फूलो से सजाया गया है।

ये पुस्तक की दुकान है इसका नाम तेज बुक स्टॉल है।

यहाँ पर मकान का काम चल रहा है यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं ।

यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं एवं ये अपना हिबाज पेहने हुए हैं ।

कुछ अपने टोपी लगाए हुए हैं बच्चे |

यहां पर बहुत सारे ऑटो खड़े हुए है एवम उनके पीछे बहुत सी कारे खड़ी हुई है। यहां पर बहुत सारे लोग चल रही है।